यहां पर रोज उपयोग होने वाली बहोत सारी चीजे रखी हैं।

और एक होटल ब्लू डायमंड है।

सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए है।

मम कुछ इलेक्ट्रिक टावर्स है और कुछ इंटरनेट टॉवर्स भी हैं।

काफी सुंदर अ लग रहा है ये देखने में--

और यहां पे अह काफी सारे लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं।